लाल रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहनाई गयी है। इसके पीछे रैक के अंदर रंग बिरंगे कपड़े रखे नजर आ रहे हैं।

इस फ़ोटो में एक तार लोहे की तार पर तोते बैठे हुए दिख रहे हैं।

कपड़े की दुकान दिखाई गयी है।

इस फोटो के अंदर पारक में बच्चों के खेलने की स्लाइड लगी हुई है।

हरे तरह-तरह के फूल दिखाई दे रहे हैं। फूल के बगल में फल भी नज़र आ र --

एक तरफ बड़ी मेज और लाल कुर्सी लगायी गयी है | नीला बोर्ड --

इस फोटो में एक लड़का अपने मुँह पर मास्क लगा कर बैठा है।